देखने में अच्छा लग रहा है बीच में घास है मुझे धतूर के फूल हैं और पौधे हैं सामने में स्कूल है।

ये एक बड़ा सा स्कूल है जिसके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। आसमान है। बाहर का ग्राउंड है।

और यहाँ पास बाउंड्री की हुई है जिसके ऊपर लोहे का बनाया हुआ था कि कोई चढेना। अच्छा दिख रहा है स्कूल ।

और ऊपर दुकान का बोर्ड लगा हुआ जिसमें बल्ब लगा हुआ है व्हाईट कलर के जो कि जल रहे हैं। नीचे में लड़का आदमी है तो जो सामान खरीद रहा है। सामने में कुछ गाड़ियां लगी हुई है। जनरल स्टोर है।

और ऊपर में कुछ है अभी गोलसा बनाया हुआ और इसका सारा सामान रखा हुआ है काउंटर के अंदर और लाइटे लगी हुई है और अच्छा दिख रहा है देखने में।